साइड में जिसमे दो खंबे भी हैं।

अह प्लेटें इसके अंदर लगी हुई--

एक लाल कलर की पट्टी भी लगी हुई है।

छत पे टंकी भी पानी वाली हरी कलर की साइड में कोने में दिख रही है।

पीछे की ओर कपड़े भी रखे हुए डिब्बे में भी और खुले हुए भी।

जिस पे जग रखे हुए हैं।

जो मकान नजर आ रहे हैं।

फोटोग्राफ भी ऊपर वाली टंगी हुई है और उसके ऊपर फुल भी चढ़ा है।

एक मकान नजर आ रहा है सामने की ओर जिसका कलर व्हाइट लाल है।

उसके ऊपर एक बोर्ड लगा है लाल और व्हाइट कलर का।

लकड़ी की एक साइड में दीवार नजर आ रही है।

बिल्डिंग के ऊपर भी लाइटें लगी हैं जो ऊपर तक ये सीढ़ी जा रही है।

पीछे की ओर एक कमरा नजर आ रहा है जिसमें चौकोर में विंडो लगी है।

उसके अंदर एक बड़ी सी पार्क नजर आ रही है जिसके अंदर हरी हरी बहोत सारी घास है।

जिसके अंदर दो फोटो सामने की ओर टंगी है एक राइट साइड पे टंगी है।

कूड़ेदान का डब्बा भी वहीं पे बगल में रखा है।

दो सींग लगे हुए है हाथ धुलने वाले वाइट कलर के--

और बहुत किस्म का सामान भी लगा हुआ जैसे कैडबरी है।

इसकी छत पे गुंबद बना हुआ है।

लाइटे चौकोर में ऊपर की ओर व्हाइट कलर की लगी है।

जो पीली और व्हाइट पीछे वाला है।

और एक दीवार सामने नजर आ रही जिसके ऊपर लोहे की--

बहोत सारे यहां पे भीड़ लगी हुई है।

और एक बिल्डिंग नजर आ रही जिसमे बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

इसके अंदर घास जमीन में नजर आ रही है।

और चौखोर टाइप में पत्थर कटे हुए लगे हुए यहां पे।

एक मेट्रो ट्रेन नजर आ रही--

लोग चलते हुए भी नजर आ रहे हैं।